ऑरेंज कलर से कलर चारो तरफ लोहे से घिरा हुआ फूलों का बागान लगा हुआ है| शीशे का खिड़कियाँ पूरा लगा हुआ है| में खिड़कियाँ --

ये एक डॉक्टर घुटने का जाँच कर रहा है। ऊका बड़ा-बड़ा मशीनें हैं। ये लाइटें जल रहा है। खिडकियाँ बंद हैं। पर्दा लग --